यह एक हमें बहोत ही अच्छा और बहोत ही सुन्दर-सा एक --

यह एक हमे बहोत ही अच्छा और बहोत ही सुंदर सा एक अच्छा सा जगह दिखाई गया है। इसमें एक रखा गया यहाँ बहोत सारे तरह-तरह के समान और यह दिखने में भी बहोत सुन्दर और अच्छा या बहोत ही मजबूत बहोत ही मेहनत से बनाया गया है।